ये जो पिक्चर है वो एक जगह का है जहां सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

हां सामने मे एक स्कूटी है जो ब्लैक कलर का है।

और जो ये कार वॉश जो पोस्ट है वो येलो कलर में लगाया हुआ है।

बहुत साथ में काम कर रहे जो हेलमेट भी पहन के हैं जिसका कलर येलो है हेलमेट का।

एक लाइट बल्ब और साइड में एक कैलेंडर है।

यह जो पिक्चर है वे एक दुकान का सामने का है जहाँ सामने में एक कच्ची दिखाई दे रहे हैं। जो थोड़ा ब्राउन कलर का है।

यहां सामने में गच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा जिसका कलर ग्रीन --

जो पिक्चर है ये एक जंगल का है।

यहां बहोत सारा टेंट है जो अलग अलग कलर में है रेड ब्लू ग्रीन येलो --

ये जो पिक्चर है वो एक कमरा का है और--

लोगों की ड्रेस ब्लैक ब्लू वाइट ग्रे बहुत सारा कलर में--

सब मे आप देख सकते हैं बहोत सारे महिलाएं लोग हैं।

सामने में एक घर है जो व्हाइट कलर का है।

ये जो पिक्चर है वो एक ढाबा का है यहां सामने में एक बाइक है।

बहौत सारा गच्चे लोग दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है।

साइड में चार पिलर है।

उसका अंदर में कुछ खाने का चीज बनाया हुआ है जिसका कलर वाइट में है।

भी है जिसका कलर थोड़ा रेड में है।

ये पिक्चर एक रूम का है और सामने में एक सोफा सेट है।

ब्लू और वाइट कलर का है।

जो सब मिरर का साइड ऊपर वाइट कलर का बनाया वो--

उसका लेफ्ट साइड में थोड़ा ग्रास लोग है और सीमेंट से कुछ बनाया लोग है लोग है जो ब्लैक कलर का है।

इसका साइड में जो जो थोड़ा ग्रीन कलर का ग्रास बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है।

इसका राइट हैंड साइड मे एक बाइक है जिसका कलर थोड़ा ब्रिंजल है।

टीना का कलर थोड़ा स्टील कलर है।

लेफ्ट राइट सब व्हाइट कलर का बनाया हुआ है फिर आगे में आदमी लोग बैठने के लिए भी बहुत सारा चीज बनाया हुआ है लोहा का।